लोहे का रेलिंग बना हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जी_रेडीमेड करके लिखा हुआ है।

यह किसी फैक्ट्री का फोटो है फैक्ट्री के फोटो में दो लोग नजर आ रहे हैं जोकि अपना काम कर रहे हैं फैक्ट्री में बहुत सारे औजार लगे हुए हैं।

रैक में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं नीचे में फर्श बना हुआ है।

यह किसी स्विमिंग पूल का फोटो है स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है स्विमिंग पूल के नीचे में काला पेंट किया हुआ है।

और स्विमिंग पूल के किनारे पे सीढ़ी लगा हुआ है जिससे आदमी नहा करके बाहर निकलता है स्विमिंग पूल में दो खंबे नजर आ रहे हैं जो उजले रंग के हैं।

यह किसी फूल का बगान है जिसमें हरे रंग का कपड़ा लगा हुआ है ऊपर में सीट से छाया हुआ है।

और इसके बगल में एक दुकान नजर आ रही है दोकान के बाहर में विडोल लिखा हुआ है।

यह किसी मिठाई दुकान का फोटो है जिसमें बहुत सारी मिठाइयां नजर आ रही है जो की ट्रे में रखा हुआ है।

और एक आदमी मोटर साइकिल पे सवार है ए_टी_एम का फोटो लाल रंग से बना हुआ है।

और मस्जिद के ऊपर में बिल्डिंग पे एक आदमी नजर आ रहा है मस्जिद के बाहर में एक किराना दुकान है।

यह किसी ऑफिस का फोटो है जिसमें दो लैपटॉप नजर आ रहे हैं एक प्रिंटर नजर आ रहा है तीन कुर्सी नजर आ रहे हैं।

और लैपटॉप एक टेबल पे रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक हवाई जहाज नजर आ रहा है बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं फील्ड नजर आ रहा है बहुत बड़ा फील्ड है।

यह ताज मैरिज हॉल का फोटो है ताज मैरिज हॉल के बाहर में तीन बाइक खड़े खड़े हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं और दो तीन घर नजर आ रहे हैं एक हरे रंग का घर नजर आ रहा है।

यह कॉल एट क्लीन कार वाश कार बाइक वाश सेंटर है जिसमें तीन गाड़ियां नजर आ रही हैं।

गाड़ी के बगल में टाइल्स रखे हुए है बहुत सारे टाइल्स लगाया हुआ है यहां पे गाड़ी खड़ा है।

यह किसी बिस्कुट फैट्री का फोटो है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते नजर आ आ रहे हैं इसमें नीला ट्रे भी नजर आ रहा है।